रखी नजर आ रही है और दो लेडीजे हैं बैठी नजर आ रही है।

और उधर सामने काफी घने-घने पेड़ नजर आ रहे हैं ऊँचे यहां पर देख पा रही हूं और ये बिल्डिंग बाइक और कत्थे --

और ये काफी बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है मुझे यहां पर तो काफी रॉयल्स रॉयल का बोर्ड लगा नजर आ रहा है।

जैसे कि मै यहां पर देख पा रही हूं ये एक रोड है और रोड के उस साइड एक गली है। गली के ऊपर --

राष्ट्रीय भवन में कुछ लाइटें जलती नजर आ रही हैं रंग बरंगी लाइटें जल रही हैं।

और इसकी गुममद कुछ ब्लू कलर की नजर आ रही है।

जैसे कि मैं यहां ना देख पा रही हूं ये एक गली है और गली में--

जैसे कि मैं यहां पर देख पा रही हूं ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और एक औरत ट्रॉली लेकर अंदर जा रही है।